और हॉल में काफी सारी लाइटिंग भी है।

नाश्ते फुल्की वाला भी खड़ा हुआ है ठेला लगा के--

जिस में आप देख सकते हैं अभी अभी कुछ पेड़ पौधे लगाए गए हैं काफी सुंदर लग रहे हैं।

जैसे की काजल हुआ लिपस्टिक होई आईलाइनर हुआ--

और दुकान में अंदर काफी सुंदर लाइटिंग भी लगी हुई है और साइड में कांच में से बहोत सुंदर फ्लेवर पॉट भी नजर आ रहा है।

की हरी नेट की वजह से क्लियर नहीं दिख रही है।

इसके ऊपर ब्लैक कलर और वाइट कलर में भी कवर्ड बनाया गया है।

बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है कुछ लोग घूम रहे है एक बड़ा सा पेड़--

ये काफी सुंदर मंदिर हैं और मंदिर के बाहर--

जिसमें आप देख सकते हैं बहोत सारी लाइट लगी हुई है।

देख सकते हैं सामने एक बड़ा सा गोडाउन है गोडाउन में बहोत सारी बोरियां रखी हुई हैं।

और आप सामने देख सकते है एक हैेड्रा मशीन खड़ी हुई हैं जोकि बिल्डिंग्स के ऊपर--

इसमें काफी मोटी लकड़ी पड़ी हुई--

और पीछे काफी सारा ढेर लगा हुआ हैं ऐसे लकड़ियों--

बेबी इसके लिए फंक्शन रखा गया है और साइड मे आप देख सकते हो काफी सुंदर--

आप देख सकते हैं एक बड़ा सा हाल है जिसमें छोटे छोटे से बच्चे हैं।